हमें पालतू जानवरों से सावधानी रखनी चाहिए यह हमारे लिए खतरा भी हो --

इसकी सजावट भी बहोत ही अच्छे तरीके से बारीकी से की गई है यह एक लॉक का दरवाजा है।

इस रस्ते में तो भी फिर लोग जा रहे हैं यहां पर दरवाजे पे लिखा हुआ है।

यहां पर एक घर भी बना हुआ है जिसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारी रहते हैं।

जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है हमें अपने घर के चारों ओर--

यहां पर कुछ लड़कों ने होली खेली है।

मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी खड़ी हुई है यह एक बहोत अच्छी दुकान है।

और टुंटिया भी मिलती हैं इस दुकान में बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के समान मिलते हैं।

सभी प्रकार की चीजें मिलती हैं यहां पर फोन पे का भी सिस्टम है यहां पर एक कूलर लगाई हुई है।

चारों तरफ सजावट की हुई है जिसमें एक माता सरस्वती का रूप लिए हुए बैठी है और उसके बार बार --